और ऊपर में घर-वर है और ये बहुत ही बढ़ियां लग रहा है और इधर भी साइकिल उकील है और ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बढ़ियां है और इधर साइड में कुछ घर-वर लग रहा है और ये बहुत ही बढ़ियां--

ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर देख सकते है एक आदमी भी है इस बुक मे और ये बुक शॉप बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे कुछ आई आई आर.एस. --